साथ पे यहाँ पर पेड़ - पौधे भी दिख रहे है और टाइल्स भी लगा हुआ है।

मार्शल है और यहाँ पर एक स्कूटी दिखाई दे रहा है।

इसमें का अनेक प्रकार के लिखाया हुआ है और साथ में यहाँ का--

कुछ पेंडुआ और ये महाविद्यालय--

बहुत सारे खुर्सी दिखाई दे रहे है।

साथ में दो तीन ब्रेंच भी दिखाई दे रहा है जिसे टेबल कहते है।

और यहाँ पर दो दर्पण दिखाई दे रहा है।

यहाँ ये स्कूल नज़र आ रहा है और इसमें सिढी दिख रहा है और--

है जो बहुत खुबसूरत दिख रहा है और ये व्यक्ति चश्मा लगाया है और इसका दाड़ी बहुत लम्बा -लम्बा है।

और यहाँ पे लाइट भी लगा हुआ है और यहाँ पर है गद्दी बिछा हुआ है जिसमें पांच गद्दी दिखाई दे रहे--

ये एक गधा बहुत सुन्दर दिख रहा है ब्राउन कलर का है।

आर.डी.एल. स्कूल लिखा हुआ है और यहाँ पर मुझे लग रहा है।

यह दो छत का बिलडिंग है।

है और साथ में पेड़ -पौधा भी दिखाई दे रहा--

और उसके नीचे एक ऐसबीआई दिखा--

और इसका रंग नीला लाल हरा अनेक प्रकार के रंग है।